ये केंद्र मुजफरनगर बिहार है इस ये एक ईगर नेशनल रिसर्च सेंटर और लीची है इसको राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहते हैं।

हाँ अलग-अलग घेरा और कलर करे हुए हैं खिड़कियों पे पाइपिंग पर और प्रशासनिक --